यहां पास सामने हिमालयन राइडर कैफे --

सामने व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है।

सामने कुछ स्टूडेंट्स विथाउट ड्रेस भी हैं और इधर विंडो भी दिखाई दे रही है जो की पक्षी --